सी और C में 2डाइमेंशनल अरैज़ पर स्पोकन ट्योटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि 2डाइमेंशनल अरै क्या है
हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे
इस ट्योटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिये मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 उबंटु पर जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
2 डाइमेंशनल अरै के परिचय के साथ शुरू करते हैं
2 डी अरैज़ रो कॉलम मैट्रिक्स में संचित होते है
बायाँ इंडेक्स रो दर्शाता है
दायाँ इंडेक्स कॉलम दर्शाता है
सी और C में मैट्रिक्स या अरै का शुरूवाती इंडेक्स हमेशा 0 होता है
यहाँ हम रो कॉलम मैट्रिक्समें 2 डाइमेंशनल अरै देखेंगे
शुरूवाती इंडेक्स 0 है
देखते हैं कि 2डाइमेंशनल अरै घोषित कैसे करें
इसके लिये सिंटैक्स है data टाइप array नामे रोव और कोलम्न
उदाहरण यहाँ हमने नुम 2 रॉस और 3 कोलम्न्स के साथ 2 डाइमेंशनल अरै घोषित किया है
अब एक उदाहरण देखें
मैने प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया है इसे खोलता हूँ
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम 2डी हाइफेन अराय डॉट सी है
इस प्रोग्राम में हम 2 डाइमेंशनल अरै के एलिमेंट्स के योग की गणना करेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हैडर फाइल है
यह हमरा मेन फंक्शन है
यहाँ हमने वेरिएबल आई और ज घोषित किया है
फिर हमने 3 रोज़ और 4 कॉलम्स के साथ नुम1 घोषित किया है
और नुम2 फिर से 3रोज़ और 4कॉलम्स के साथ
नुम1 और नुम2 2 डाइमेंशनल अरै हैं
यहाँ हमने यूज़र से इनपुट के रूप में नुम1 मेट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिया
एलिमेंट्स पंक्ति वार संचित होते है
हमने आई के लिए रोज़ और ज के लिए कॉलम्स निर्धारित किया है
यह फोर लूप कंडीशन जाँचेगा कि आई 0 से 2 तक रन होता है यह फोर लूप कंडीशन जाँचेगा कि ज 0 से 3 तक रन होता है
उसी तरह यहाँ हमने यूज़र से इनपुट के रूप में नुम2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिया
यहाँ हम मैट्रिक्स नुम1 प्रदर्शित करते हैं
यहाँ परसेंट 3डी का उपयोग टर्मिनल पर मैट्रिक्स के अलाइन के लिए किया जाता है
अब यहाँ हम मैट्रिक्स नुम2 प्रदर्शित करते हैं
फिर हम नुम1 मैट्रिक्स और नुम2 मैट्रिक्स को जोडते हैं और परिणाम प्रदर्शित करते हैं
यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम निष्पादित करें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
कंपाइल करने के लिये टाइप करें जीसीसी स्पेस 2डी हाइपेन अराय डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस अर्र और एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश arrअब एंटर दबाएँ
यहाँ हम देखते हैं Enter थे एलिमेंट्स ओएफ 3 इंटो 4 अराय नुम1
अब मैं वेल्यूज प्रविष्ट करूँगा

अब हम देख सकते हैं enter थे एलिमेंट्स ओएफ 3 इंटो 4 अराय नुम2
मैं वेल्यूज प्रविष्ट करूँगा

आउटपुट प्रदर्शित होता है
यहाँ हम नुम1 मैट्रिक्स देख सकते हैं
यहाँ हम नुम2 मैट्रिक्स देख सकते हैं
और यह नुम1 और नुम2 का योग है
अब हम देखेंगे कि C में इसी प्रोग्राम को निष्पादित कैसे करें
मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख लिया है
मैं इसे खोलूँगा और समझाऊँगा
C में 2 डाइमेंशनल अरैज़ के लिए यह प्रोग्राम है
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम 2डी हाइफेन अराय डॉट सीपीप है
एक्स्टेंशन डॉट सीपीप है
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यह हमारा यूजिंग स्टेटमेंट है
यह हमारा मेन फंकशन है
यहाँ हमारे पास काउट फंकशन है क्योंकि हम C में आउटपुट प्रिन्ट करने के लिए काउट का उपयोग करते हैं
फिर हमारे पास सिन फंकशन है
हम C में लाइन को रीड करने के लिए सिन का उपयोग करते हैं
यहाँ हम स्लैश ट का उपयोग करते हैं इसका अर्थ है हॉरिजोंटल टैब जो 4 स्पेसेस के समतुल्य है
बाकी कोड हमारे सी कोड के समान है
अब सेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
प्रोम्प्ट को क्लियर करें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस 2डी हाइपेन अराय डॉट सीपीप हाइफेन ओ स्पेस अर्र1 और एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश अर्र1 एंटर दबाएँ
यहाँ हम देखते हैं Enter थे एलिमेंट्स ओएफ 3 इंटो 4 अराय नुम1
मैं वेल्यूज प्रविष्ट करूँगा
अब हम देखते हैंEnter थे एलिमेंट्स ओएफ 3 इंटो 4 अराय नुम2
मैं वेल्यूज प्रविष्ट करूँगा
आउटपुट प्रदर्शित होता है
हम देख सकते हैं नुम1 मैट्रिक्स नुम2 मैट्रिक्स
और यह नुम1 और नुम2 का योग है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
स्लाइड पर वापस आएँ
सारांशित करें
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 2डी अरै में एलिमेंट्स जोडना
2डी अरै प्रिंट करना
और 2 डाइमेंशनल अरै के योग की गणना करना
नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट के रूप में दो 2डाइमेंशनल अरैज़ ले
उन्हें सबट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करें और परिणाम ज्ञात करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आप से विदा लेता हूँ